यह एक दुकान दिखाई दे रही रही है दुकान के बाहर दो आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे है बहुत सारी मोटरसाइकिल रखी हुई दिखाई दे रही है।

यह एक डैम बना हुआ दिखाई दे रहा है डैम मे से पानी आते हुए दिखाई दे रहा है आसपास पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है।

है एक होटल बनी हुई दिखाई दे रही है जिस पर होटल राजा एन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

पंखा लगा हुआ दिखाई दे रहा है और टिवलाईट दिखाई दे रही है।

यह एक जेंट्स पार्लर दिखाई दे रहा है जिसमें आदमी कुर्सी पर बैठा है और खड़ा हुआ लड़का आदमी की बाल काट रहा हैं।

कारी दिखाई दे रही है। एक पौधा सा दिखाई दे रहा है।